एक ट्रक पे सामान लदा आ है।

यह एक शादी का माहौल है।

खाने पीने का एक रेड कलर क कुर्सी है।

और इसमें मोटरसाइकिल खड़ी की गई है।

और पूल घेरा हुआ है पहाड़ दिख रही हैं।

बहुत समारे सारे सामान रखा हुआ है रेड कलर का--

उजला कलर का कुर्ता धोती पहने हुए हैं।

यह मोटरसाइकिल बनाने की दुकान है।